क्या मुझे संगीत का कार्य लग रहा है यहां बजाने वाली पेटी रखी हुई है।

कुछ सर इधर-उधर जा रही है इनका निरीक्षण कर रही है पीछे भी शटर लगी हुई है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यह स्थान जॉगिंग का दिखाई दे रहा है जहाँ जॉगिंग किया जाता है यहाँ लाइट लगी हुयी है बहुत सारी --

यह मुझे मैथिला बुक सेंटर दिखाई दे रहे है यहां बहुत सारी बुक रखी हुई है कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

ग्रीन - ग्रीन पेड़ लगे हुए हैं और नीचे भी हरा गार्डन बना हुआ है रेलिंग बनी हुई है।

ऊपर पुल है यहाँ से वाहन जाते होंगे बाहर भी पेड़ लगे हुए हैं ये पानी बहुत ही मटमैला है।

यहां बच्चा वार्ड लिखा हुआ है। नीचे पार्किंग बनी हुई है। इसमें बहुत सारी कर खड़ी हुई है। यह बच्चा वार्ड --

यह मुझे आश्रम जैसा दिखाई दे रहा है बीच में राउंड बना हुआ है एक कुआं बना हुआ है जिसमें फव्वारे निकल रहे हुए हैं।

कॉलेज पूर्णिया बिहार यह मुझे कॉलेज दिखाई दे रहा है सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है जहाँ रेलिंग बनी हुई है।